दुकान में बाहर की तरफ एक काउंटर है।

इमारत पीले गुलाबी व हरे रंग की है।

सभी कर्मचारियों ने ऑरेंज कलर का शर्ट पहन रखा है।

ड्रम के बगल में लकड़ी के पटरे भी पड़े है।

दो व्यक्ति आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

रोड पर कुछ गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं।

बिल्डिंग के सामने एक रास्ता भी है रास्ते पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं।

बिल्डिंग के सामने एक पार्क भी है।

बगल में बैंगन के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दिख रहा है।

फायर स्टेशन की इमारत पर पुलिस फायर स्टेशन चौक लखनऊ लिखा हुआ है।

नदी के दूसरी तरफ कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं।

मॉल क में बहुत सारे काउंटर भी हैं।

मेले में बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति पहाड़ी पर खड़ा हुआ है।

व्यक्ति ने हरे रंग की टी शर्ट व काले रंग की शॉर्ट्स पहनी हुई है।

भी बच्चों ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है।

काउंटर के ऊपर पानी की बोतले भी रखी हुई हैं।

व्यक्ति ने हरे रंग की टी शर्ट व नीला शॉर्टस पहना हुआ है।

गुफा के बाहर फूलों से सजावट की गई है।

गुफा के बाहर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।